यह एक कमरा नजर आ रहा है इसमें हरे रंग का कारपेट सा दिखाई दे रहा है उसमें कुछ पिक्चरें दिखाई दे रही हैं घड़ी दिखाई दे रही है जोकि दीवाल में हरा-हरा रंग का दिखाई दे रहा है साइड से सीलिंग --

साइड में घर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही हैं। दीवाल --

दिन का समय आसमान है रंग सफ़ेद और ग्रे कलर का दिख रहा है बिजली के लंबे-लंबे तार दिखाई दे रहे हैं लगी दिखाई दे रही एक व्यक्ति खड़ा है।

पीछे बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं। सामने एक छोटा सा झाड़ दिखाई दे रहा है। एक बहोत लम्बा सा सफेद पाइप दिखाई दे रहा है और आसमान का रंग सफ़ेद है।

का समय है। रात में राम का समय है। बोहत बड़ी नदी दिखाई दे रही है। साइड में बहोत बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है। --

है। दिवालें दिख रही हैं। ईंट की साइड की दीवालें पक्की दिख रही हैं। खिड़की दिख रही है। सामने बहोत बड़ा आँगन दिख रहा है जिसमें हरा हरा कुछ लगा है और वहीं से मकान बनती हुई नज़र आ रही है।

आसमान का रंग सफ़ेद दिख रहा है। साइड में बिल्डिंग दिख रही है फिरोज़ी कलर की और आसमान पिंक कलर में दिख रहा है और बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है। लेबर अपना काम कर --

कुछ लेडीज़े खड़ी हैं और कुछ व्यक्ति बैठ के फूलों को तोड़ रहे हैं। साइड में बहोत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहें हैं नीचे हरी-हरी घांस दिखाई दे रही है और व्यक्ति खड़ा है दोनों तम्बुओं को देख --

दिखाई दे रहा है नारियल का वो रखा हुआ नज़र आ रहा है एक व्यक्ति साइड में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और लाइटिंग पूरी घास के ऊपर पड़ रही तो वो बहुत सुन्दर दिखाई दे रही।